चित्र में बहोत बड़ा सा जिम का रूम मैं जैसे में बहोत सारे लोग--

होंगे होंगे ओला के हैं छोटे छोटे--

इस चित्र में एक बहोत बड़ा पेट्रोल पंप है पेट्रोल पंप के उस तरफ बहोत बड़ी सी--

कार खड़ी हुई है और एक बड़ी सी पोस्टर लगी है।

और लाइट भी एक लगाई गई है।

होते हुए रोड के किनारे दुकान भी दिखाई दे रही हैं।

इस चित्र में बहुत बड़ा चट्टान दिखाई दे रहा है चट्टान के ऊपर बहुत सारे लोग खड़े हैं।

इस चित्र में एक बहोत बड़ा चट्टान दिखाई दे रहा है चट्टानों से झरने गिर रहे है नदी की ओर जा रहे हैं।

कसरत करते हैं। ये मशीन पड़ी हुई जिम ऊपर में--

इस चित्र में एक बहोत बड़ा सा--

बगीचा दिखाई दे रहा जिसमें छोटे छोटे पौधे लगे हुए हैं।

इस चित्र में एक बहोत बड़ासा बिल्डिंग है बिल्डिंग का मेन एंट्री गेट दिखाई दे रहा है जो रोड के किनारे लगी हुई है।

और एक मंदिर बनी हुई है और लोग यहां बीच में बड़ी सी नदी है ग्रीन कलर की।

इसमें पुरी पानी पानी है और एक सीढ़ी बनी हुई जिसमें एक आदमी खड़ा हुआ है।

ये ज्वेलरी का शोरूम है जो अभी अभी इनॉग्रेशन हुआ है और बाहर पे गेट पर --

छोटे छोटे फूल के डेकोरेट किये गए हैं सीढ़ी बनी हुई है नीचे में पार्किंग के लिए बनाया गया है बगल में एक पेड़ लगी है।